और आराम करने के लिए बना हुआ ट्यूबत दिखाई दे रहा हैं।

और हरे भरे पेड़ पर लगा हुआ फल दिखाई दे रहा है।

हमें यहां पर ये बहोत सारे गमले दिखाई दे रहे हैं।

दीवाल के ऊपर लगने वाले स्टिगर्स की दुकान दिखाई दे रही है।

दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा हुआ राजकीय पॉलिटिक --

और उसपर रेड कलर से कुछ बनाया हुआ दिखाई दे रहा है पेंट किया हुआ लाइटे लगी हुई दिखाई दे रही है पेड़ दिखाई दे रहा है।

मोटरसाइकिल दिखाई दे रही जिस पे डब्बे लडे लदे हुए दिखाई दे रहे हैं।

उसने ग्रीन कलर का कपड़ा पहना हुआ है और सफेद कलर की टोपी लगाई हुई है।

बाजू में एक दुकान दिखाई दे रहा है जिसमें खूब सारी पैकेटे टंगी हुई दिखाई दे रही है।

गेट का कलर है सफेद कलर और नीले कलर से बनाया गया है और हरे कलर से।

चम्मच लिखा रखा हुआ है और जग दिखाई दे रहा है और बाल्टी दिखाई दे रही है।